यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोहोत पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं। घने-घने हैं पेड़-पौधे।

यहाँ पर एक गाड़ी है और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे अच्छा कलर है बिल्डिंग का --

और एक पोस्टर है जो सामने लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है रंगोली कलर लैब ।

तीन छत हैं रंग-बिरंगे दिखाई दे रहे है एक आदमी कुर्सी पर बैठा है एक टेंट है जो कि ग्रीन कलर का है ।

और जमीन पर भी भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है फूलो से सजा हुआ है अच्छा दृश्य है।

बाइकें नज़र आ रही है खड़ी हुई और एक छोटा-सा चेयर भी नज़र आ रहा है। फुहारें --

जो कि गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है इसका एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर किए हुए है ।

और यहाँ पर एक हिंदी इंग्लिश का कस्टमर सर्विस पॉइंट लिखा हुआ है ।

और एक आदमी है जो ब्लू कलर का ड्रेस पेहना है ।

और बाइके भी खड़ी है यहाँ पर और दुकान के बोर्ड पर लिखा हुआ है ए.टी.एम. ।

लगे हुए है मानो ऐसा लग रहा है बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ पर हरे-भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और घास भी नजर आ रहा है ।